यहाँ हमें एक बोहोत ही अच्छा जो है घर की तरह एक म्युजियम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये --

यहाँ पर हमें एक बॉय दिखाई दे रहा है जो कि बोहोत ही ब्यूटीफुल हेयर कट करवाए हुए है उनके ऊपर के बाल बड़े हैं नीचे से जो बाल है ट्रिम किये हुए हैं कट लगा हुआ हमें --

यहां पर हमें एक बुक शॉप दिखाई दे रही है। बुक शॉप बोहोत ही क्लीन है। यहां पर हर शेल्फ में जो है बुक्स बहोत अच्छी तरह से जमाई गई है।

शॉप बहुत बड़ी है जोकि हमे वाइट कलर की दिखाई दे रही है। एक पर्सन है जो यहाँ पर हेयर कट कर रहे --

सामने काउंटर पे हमे बोहोत सारे पेन च है दिख रहे हैं। एक ऑरेंज कलर की शर्ट पहने हुए बॉय बैठे ए जिनके हाथ किन में मोबाइल है।

यहां मैं घर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का पेंट है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यां हमें बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा है घर के ऊपर हमे काफी सारी खिड़कियां भी दिख रही है इसके ऊपर कुछ ए.सी. भी लगे हुएं हैं।